कुछ लाइटें जलती हुई दिखाई दे रहा है दीवालो पे कुछ पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक दुकान दिखाई दे रहा है उसमें दो टोकरी में कुछ सामग्री दिखाए दे रहा है और केक बन हुआ दिखाई दे रहा है।

उस के बगल में भी कुछ है और उस के निचे पोस्टर --

उसके बगल में एक मकान दिखाई दे रहा है कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे --